एक जिम है जो बहुत बड़ा सड़ा जिसे डेकोरेट किया गया है बलून से बलून है व्हाइट ।

लाइटिंग है लेडिस है जेंट्स है चेयर है रेड रेड --

बाहर बहोत सारे नाम लिखे हुए हैं बा बाल्टिस है टूल्स है।

छोटा सा बच्चा है एक जेंट्स दो तीन जेंट्स है एक बैग लिए हुए साइ--

अं बाहर में बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं बाहर जीसू का फोटो मूर्ति बना हुआ है जिसे कवर किया गया है कांच से।

पिंक कलर में एक जे_सी_बी टाइप का कुछ दिख रहा है नाइट का समय है एक पोल है जिसमें पेंट किया हुआ है ऑरेंज जो--

मेडिकल स्टोर टाइप का कुछ दिख रहा है जिसके बाहर उसे गेंदा फूल के माला से सजाया गया है।

नीचे फर्श पर मार्बल लगाए गए हैं और उधर साइड में कुछ और भी बच्चे--

लोहा का पाइप लगा हुआ एक पोस्ट है जिसमें टांगा गया है बाँस है।

कलर्स किए गए नीचे फर्श पर विंडोज है वेंटीलेटर टाइप्स के दरवाजा है।

इंडियन ऑयल टाइप्स का कुछ एक बना हुआ है जिसमें दो लड़के खड़े है एक ऑरेंज टी शर्ट और खाकी पैंट्स पहन के--